और यहां पे मतलब बहोत ही अच्छे तरीके से दुकान लगाई गई है।

अ ऐसा लग रहा है कंप्यूटर यहां पे रखा हुआ है और--

अ शायद होगा इसलिए यहां पे ये लोग आए हुए हैं यहां पे आर_सी_सी हुई है।

और एक कार दिखाई दे रही है एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

यहां पर लोगो देख के मैं समझ पा रहा हूं यहां पे प्रार्थना हो रही है।

यहां पर किसी चीज पर चर्चा हो रही है ये मेरे ख्याल से चर्च हो सकता है।

यहां पे आप सब लोग देख सकते हैं एक हाथ मुझे दिखाई दे रहा है शायद वो फोटो ले रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे विवो के फोन हुए हैं रियलमी का फोन रखा हुआ है।

ऊपर चढ़ रहे हैं कुछ नीचे उतर रहे हैं यहां पर रेड कलर की बस है ये बस में लोग बैठ रहे हैं कुछ उतर रहे हैं।

बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं जो जरूरत पड़ती है एडमिशन यही होता है।

जैसा की आप सब लोग देख सकते हैं यहां पे--

यहाँ पे महिलाएँ भी आए हुए हैं यहाँ पे पुरुष भी आए हुए हैं आप सब लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा यहाँ का लग रहा है।